इस तस्वीर मे हमें एक लंबा सा ब्रिज नजर आ रहा है नीचे मे बहुत सारे घर हैं।

फूल का माला लगाए हुए हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा मॉल बन रहा है।

यहां पर बहुत सारे नीचे लोगहै--

यह शादी का मंडप है।

बच्चे लोहे के रैक का ऊपर खड़ा हुआ है।

अम् खिड़की के बाहर पेड़ पौधे नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारा बकरी नजर आ रहा है।

भगवान को बहुत सुंदर से सजाया गया है।

जैसे की प्लेट बाटी और ग्लास और जग रखे हुए है।

कुछ पौधा दिखाई दे रहा है।

एक हाथ मे मेजरमेंट टेप पड़ा हुआ है और कॉपी पकड़ा--

इस तस्वीर में हमें बहुत बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा--

बिल्डिंग को बहोत सुंदर से बनाया गया है।

यहां पर एक बड़ा सा गेट है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा घर है।

आगे दो तोला का बिल्डिंग है जो की अभी बना रही है।

अंदर में बहुत सारे फूल लगाए हुए हैं।

यहां पर दो गाड़ी पार्क की है।